फूल लग रहे है ।

ग्रीन फर्श है सीढ़ियां लगी हुई हैं व्हाइट कलर के दोपट्टे ओढ़े हुए हैं।

ये एक ऊंची बिल्डिंग है जिसके नीचे दो स्कूटी दो बाइक्स खड़ी है एक गेट है बड़ा सा। शीशे लगे हैं।

अब इसमें वो थोड़ा नीला व्हाइट कलर की लाइटें रही हैं इसके फर्श का कलर ब्लैक एंड व्हाइट है।

इस इमेज में एक मुस्लिम लड़की है। उसके हाथ में एक बच्चा है एक दो मंजिला बिल्डिंग है।